बहुत सारी गाड़ियाँ इसके नीचे से गुजरते हैं और इधर एक बैनर लगी हुई है।

और ये हिरण गो गोला कलर के हैं और इधर बहुत सारे धुल हैं और ये एक बहुत सारे मिट्टी रखी हुई है।